औरतों के लिए शौचालय बने हुए हैं तथा इसके किनारे पर एक चेयर रखी हुई है और बाहर एक टंकी बनी हुई है।

यह एक बिल्डिंग है जिसका शेप रावुन्द शेप है तथा इसके पीछे बहोत सी पुरानी बिल्डिंगे हैं इस बिल्डिंग का --

और रिवर के किनारे पर घर बने हुए।

यहा एक पेट्रोल पंप है जिसके किनारे पर एक गाडी खड़ी हुई है और उसके पीछे एक व्यक्ति उससे ईंटे निकल रहा है ।

यह एक पेट्रोल पंप है जिस पर --